उनके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है।

टाइप का कुछ लग रहा है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो की --

आग में कुछ जला रहा हैं।

फ्लावर्स लगे है फ्लावर्स पॉट हैं हैंगिंग वाले फ्लावर्स पॉट भी --

सामने एक सोफा सेट लगा हुआ है सिंगल टेबल पड़ा है नीचे मैट है ब्लू कलर का।

यह किसी घर की फोटो है।

पेज की तरह स्क्रीन आ रही है।

यह चर्च की तरह एक बिल्डिंग लग रही हैं ये चर्च ही--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

लग रहा है बाहर भी दो--

आ बहो यह स्टेशनरी स्टेशनरी की दुकान है इसमें बहोत सारे--

और दो ही ट्रेन जो है आती हुई साइड को है।

के बीच में एक रास्ता है वो दिखाया गया है और एक छोटा सा पुल है ये पुल एक नाले के ऊपर बना हुआ है।

ये गाड़ियां को ठीक करने अं वालों की दुकान हैं।